एक बड़ा सा ग्राउंड नजर आ रहा है जिसमें पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं पत्थर लगे हुए हैं।

और रेड येलो कलर का दिवाल नजर आ रहा एक घड़ी दिखाई दे रही है पोस्टर लगा हुआ नजर आ रहा एक जलती हुई लाइट दिखाई दे रही है।

यह जिम सेंटर दिखाई दे रहा है जहां बहोत सारे जिम के मशीने नजर आ रही है वाइट कलर का दीवार नजर आ रहा है जिसमें बॉक्स लगे हुए हैं।

सामने एक व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही जिसमें खिड़की लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

छोटे गुलदस्ते भी लगे हुए हैं व्हाइट कलर का लैम्प जलता हुआ दिखाई दे रहा है।

तीन जगरनाथ में भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही है जिसमें व्हाइट और लाल कलर से--

बहोत बड़ा पंखा नजर आ रहा है ग्रे कलर की टाइल्स लगी दिखाई दे रही है।

सामने ऑरेंज कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है ग्रे कलर का शटर नजर आ रहा है।

कांच का और वाइट कलर का टेबल नजर आ रहा है जिसमें ब्रेड के पैकेट और तराजू पर और भी बहुत सारे चॉकलेट और कुछ सामान नजर आ रहे हैं।

एक ग्रे कलर का टेबल रखा हुआ नज़र आ रहा है उसमें कुछ रखा हुआ दिखाई दे रहा है वाइट कलर के पंखे नज़र आ रहे है वाइट कलर का सोफा दिखाई दे रहा है।

इसमें वाइट कलर का बिल्डिंग नजर आ रहा है जिसमें लाल कलर से बॉर्डर बना हुआ है खिड़की दिखाई दे रहे है लोहे की--

हरे कलर की पट्टी नजर आ रही है सामने एक मंदिर नजर आ रहा है गोल्डन टेंपल टाइप का।

खाने की चीज रखे हुए नजर आ रहे है में व्हाइट कलर की टाइल्स दिखाई दे रही है।

नीचे बाजू में एक शटर दिखाई दे रहा है दवाई दुकान लिखा हुआ है।

इसका कलर क्रीम कलर है और रेड से बॉर्डर बना हुआ दिखाई दे रहा है एक खिड़की बनी हुई नज़र आ रही है।

लोहे के कु डिजाइन बने हुए हैं ऊपर लाइट जल रही है पोंगा लगा हुआ है साउंड का--

चटाई बिछाकर योगा करते हुए दिखाई दे रहे है व्हाइट कलर की चेयर नज़र आ रही है टेबल लगे हुए दिखाई दे रहे है बड़ा सा ग्राउंड है पेड़ लगे हुए नज़र आ रहे है।

यह सैलून नजर आ रहा है ब्लैक कलर की चेयर दिखाई दे रही है जिसमें--

ब्लैक कलर की चेयर नजर आ रही है जिसमें बहोत सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक रेड कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग भुरे रंग की कुर्सी में बैठे हुए नजर आए साइड में एक लाल कलर का कुर्सी दिखाई दे रहा--